सामने कुछ म म महल से बने हुए महल का रंग चॉकलेटी और पिले कलर जैसा है और उसपे उजाला पड़ रहा है।

ये पीछे की और भी कुछ पेड़ लगे हुए है और इधर के साइड भी कुछ पेड़ लगे हुए है दीवारें बनी हुई है कुछ पीले कलर की दीवारें है उसपे लाल कलर की एक पट्टी है डी_पी लगी है।